है और टायर ब्लैक --

सारा सामान मिलता है और पशुओं--

यहां पर मन्नत मांगी जाती है एक--

यहां एक जे_सी_बी मशीन चल रही है।

मैं अब एक ट्रैक्टर देख रही हूं ट्रक --

सामने से आ रहा है।

कबुतर जा रहा है और सामने एक--

म्युनिसिपालिटी का जिओ दफ्तर बना--

यहां बहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे--

कड़ी नजर आ रही--